रोड है। रोड पर आ कोई फटाके जला रहे हैं और वहाॅं पे लेडिज खड़ी हुई हैं।

और बहुत सारे लाइट लगी हैं डेकोरेशन है फूलों का और अंदर भी आ जेंट्स खड़े हुए है।

यहां पे बोहोत बड़ा हॉल टाइप का बना हुआ है। वहां पे बोहोत सारे बच्चे बैठे हुए है छोटे-छोटे---

और जेंट्स बच्चों एक्सरसाइज कर रहे हैं रूम के अंदर और रूम में पर्दे भी लगे हुए हैं।

और सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। बैनर और बहा अ रोड पर अ रोड पर बहोत सारे पब्लिक है अ लेडीज जेंट्स सारे हैं और बहोत सारी लाइटिंग लगी हुई है।